सामने दो बस खड़ी हुई नजर आ रही है नीचे समतल सी जगह है साथ में एक बस और खड़ी है पीछे आगे की तरफ साथ में एक बिल्डिंग है।

सामने एक तीन मंजिला ईमारत नजर आ रही है। ईमारत के बाहर बाउंड्री बनी हुई है। बाउंड्री के ऊपर जालीदार कांटे----

--मे एक चार मंजिला इमारत नजर आ रही है इसके साथ एक बहुत बड़ा पिलर सा भी लगा हुआ है।